इस बिल्ड यह एक बिल्डिंग दिखाई रही हैं इस बिल्डिंग के नीचे एक लड़का खड़ा हुआ है जो की वाइट शर्ट पहने है सफ़ेद कलर की।

एक लड़का बैठा है कुर्सी रखी है छत की लाइट जल रही है। केले के पेड़ खड़े होगें।

एक दुकान है बहुत सारा सामान है एक बोरी रखी है एक स्टूल है बॉक्स रखे हुए हैं।

दो आदमी बैग टांगे है एक दुंकान मे बैठा हुआ है सन्तरे है।

तीन आदमी है एक सीढ़ी पे बैठकर दो आदमी कुछ काम कर रहे हैं।

एक ए बिल्डिंग है सफ़ेद कलर और हरी कलर है और गाड़िया बाइक रखी हुई है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत बड़ी यहाँ पर गेट लगा हुए है भी दिखाई दे रहा है एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक कार खड़ी हुई भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर--